यहाँ पर कुछ महिलाये दिखाई दे रही है जो नृत्य कर रही है पीछे कुछ मूर्ति बनी हुई है जो दिखाई दे रही है गमले रखे हुए है जो दिखाई दे रहे है ये यहाँ पर एक चटाई बिछीं हुए है जो दिखाई दे रही है।

एक एरोप्लेन दिखाई दे रही है यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक कपड़ा डाला हुआ है जो दिखाई दे रहा है स्टेज पर यहाँ पर एक स्टेज बनी है।

एक हारमोनियम रखी हुई है यहाँ पर एक यहाँ पर एक कवर रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पानी की बोटल और --

यहाँ पर बलूनस लगे हुए हैं दीवार पर जो दिखाई दे रहे हैं तस्वीर लगी है जो दिखाई दे रही है दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

एक पहाड़ दिखाई दे रहा है यहा पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक पत्थर रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर कुछ सामान टंगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर लकड़ी गड़ी है जो दिखाई दे रही है।

एक बाल्टी रखी हुई है जो दिखाई दे रही है एक फावड़ा रखा हुआ है तगारी रखी हुई है एक सीमेंट की बोरी रखी हुई है जो दिखाई दे रही है।

मछली बाजार दिखाई दे रहा है यहाँ पर मछलियां रखी हुई है जोकि कुछ व्यक्ति बेच रहे हैं कुछ व्यक्ति खरीद रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पंनियों में फूल रखे हुए हैं जो दिखाई दे रहें हैं यह एक फूल की दुकान लग रही है यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं जो दिखाई दे रहें हैं कुछ व्यक्ति फुल बेच रहें हैं जो दिखाई दे रहें हैं।

वह दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है खाली मैदान दिख रहा है।